और बाहर जींस की पैंटें भी टंगी हुई हैं।

यहां अनार छुटा रहे हैं और ये आदमी और औरत भी खड़ी हैं।

यहां पे नीचे जमीन पे कुछ लाइने खींची हुई हैं सुफेद कलर में।

पीछे दीवार के पास बोर्ड बना हुआ है रखा है।

यहां पे बहोत बड़ा गोदाम है।

यहां पे कई सारे बंगले बने हुए हैं आऊर मंदिर का गेट भी बना हुआ है।

और बहोत से आदमी भी है।

नीचे हरे रंग की मैट भी बिछी हुई है।

यह एक बहुत बड़ा बारांदा है।

यह एक दुकान है और इसमें बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

यहां ऊपर बुद्ध जी भगवान की तस्वीर बनी हुई है।

बंधन वाला बैंक वाला बोर्ड भी लगा है। बहुत सारी दुकानों पे बोर्ड लगे हुए है।

यहां ये फ्राई दाल रखा हुआ है।

और बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं शीशो में।

यह बहुत बड़ा पार्क है।

यह एक बहोत बड़ा पैरस है।

यहां पे ये एक बहोत बड़ा बरांदा है।

और मौत का कुआं भी लगा हुआ है बहोत सारी लाइटे लगी है।

लोहे की एक गोदरेज भी है लैपटॉप भी रखे हुए हैं।

यहां कुर्सी भी रखी हुई है और कुछ किताबें भी रखी हुई हैं।

यहां ये रूम है अउर यहां हनुमान जी की तस्वीर टंगी हुई है। दीवार पे दीवारों पे व्हाइट कलर हो रहा है।